libreoffice में drawings में text प्रविष्ट करने पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
drawings में text के साथ कार्य कैसे करें
drawings में text कैसे format करें और
text boxes के साथ कार्य कैसे करें
हम यह भी सीखेंगे
indents space set करना और text अलाइन करना
lines और arrows में text जोड़ना
callouts में text रखना
text दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है
यह बनाए हुए object में सीधे प्रविष्ट किया जा सकता है
lines और arrows पर सहित
यह text box में प्रविष्ट किया जा सकता है एक स्वतंत्र draw object के रूप में
हम उंबटू लिनक्स वर्जन 1004 और लिबरऑफिस सूट वर्जन 334
का उपयोग कर रहे हैं
draw file water cycle को खोलें और इसमें कुछ text जोड़ें
हम सूर्य के आगे दो सफेद बादलों में cloud formation text जोड़ेंगे
सफेद बादल समूह को चुनें
समूह को प्रविष्ट करने के क्रम में इस पर doubleclick करें
ऊपर के बादल को चुनें
अब drawing toolbar से text tool चुनें
क्या आप देखते हैं कि cursor एक छोटी vertical blinking line में परिवर्तित होता है
यह text cursor है
अब text cloud formation type करें
अब पेज पर कहीं भी click करें
अन्य सफेद बादल के लिए भी समान text प्रविष्ट करें
समूह से बाहर आने के लिए पेज पर कहीं भी doubleclick करें
अब इसी तरह से सूर्य को name दें
objects में text प्रविष्ट करना इससे आसान नहीं हो सकता है
अगला gray बादल समूह को चुनें
पहले के अनुसार समूह प्रविष्ट करने के लिए इस पर doubleclick करें
प्रत्येक बादल में rain cloud type करें
gray बादल में text काले रंग में होने के काऱण यह दिखाई नहीं देता है
अतः text के रंग को सफेद में बदलें
text चुनें और context menu के लिए दायाँclick करें और characterचुनें
character dialog box प्रदर्शित होता है
font effects टैब पर click करें
font color field में नीचे scroll करें और white चुनें
ok पर click करें
font का रंग सफेद में बदलता है
इसी तरह से दूसरे बादल के text का in बदलें
text चुनें और दायाँclick करें और फिर character चुनें
font color में white चुनें
समूह से बाहर आने के लिए पेज पर कहीं भी doubleclick करें
इसी तरह त्रिकोण में mountain शब्द type करें जो पहाड़ को चित्रित करता है
आप अक्षर के लिए
टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं जो कि फॉन्ट शैली बदलता है और फॉन्ट को विशेष प्रभाव देता है
आप paragraph के लिए भी text को format कर सकते हैं जैसा कि text पंक्तिबद्ध करना indents set करना या स्पेस देना और टैब positions set करना
आप इस dialog boxes को या तो
context menu से या
main menu से ऐक्सेस कर सकते हैं
main menu से character dialog box access करने के लिए format चुनें और character चुनें
main menu से paragraph dialog box access करने के लिए format चुनें और paragraph चुनें
आयत में एक मोटी काली line बनाएँ यह दिखाने के लिए कि भूजल कहाँ जमा होता है
drawing टूलबार से line चुनें
cursor को पेज पर ले जाएँ बायाँmouse button दबाएँ और बायें से दायीं ओर drag करें
एक क्षैतिज line बनाएँ जो आयत को दो समान भागों में बाँटेगी
the दो भागों में बंट जाता है
अब line को चौड़ी करें
line चुनें और context menu के लिए दायाँclick करें
lineपर click करें line dialog box प्रदर्शित होता है
style field में dropdown box पर click करें
ultrafine 2 dots 3 dashes चुनें
width field में value प्वांइट 70 प्रविष्ट करें
ok पर click करें
हमने line को चौड़ा कर दिया है
आयत में text ground water table प्रविष्ट करें
पहले text tool चुनें
drawing toolbar पर capital t option है
draw पेज पर जाएँ
अब cursor इसके नीचे छोटे capital i के साथ एक plus sign में परिवर्तित हो जाता है
आयत के अंदर click करें
ध्यान दें कि एक text box दिखाई देता है
यहाँ ground water tableटाइप करें
text box के centre में text को पंक्तिबद्ध करने के लिए cursor को text box के अंदर रखें
सबसे ऊपर standard toolbar में centered icon पर click करें
इसी तरह से
त्रिकोण में rain water flows from land into rivers and sea टेक्स्ट जोड़ें
नियतकार्य के लिए इस tutorial को रोक दें
एक समचतुर्भुज बनाएँ
text this is a square
a square has four equal sides and four equal angles each angle in a square is ninety degrees
the square is a quadrilateral प्रविष्ट करें
text dialog box में options को उपयोग करके इस text को format करें
text में font size style और alignment options को लागू करें
अब आकृति में arrows व्यवस्थित करें
ये arrows जमीन वनस्पति और बादलों के जल भाग से जल का वाष्पीकरण दर्शाते हैं
सबसे बायें arrow को चुनें
अब click करें और पहाड़ की ओर drag करें
बीच का arrow चुनें
अब click करें और पेड़ों की ओर drag करें
तीसरा arrow बादलों के जल से जल का वाष्पीकरण दर्शाता है
line बनाने के लिए curve option का उपयोग करें जो पहाड़ों पर जल नीचे की ओर जाना दर्शाती है
drawing toolbar से curve पर click करें और freeform line चुनें
draw पेज पर पहाड़ के आगे cursor रखें
बायाँmouse button दबाएँ और नीचे drag करें
आपने एक वक्र line बना ली है
add इन प्रत्येक arrows में विवरण जोड़ें
दायीं ओर पर पहले arrow को चुनें और आसानी से evaporation from rivers and seas type करें
पेज पर कहीं भी click करें
text line पर दिखाई देता है
ध्यान दें कि text ठीक line पर रखा गया है और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है
text को line के ऊपर लाने के लिए line पर click करें
text क्षैतिज अवस्था में स्थित है
cursor को text के अंत में रखें और enter की को दबाएँ
पेज पर click करें
text पंक्तिबद्ध हो जाता है
context menu से options का उपयोग करके lines पर text टाइप और arrows भी formatted किये जा सकते हैं
context menu का उपयोग करके font का आकार format करें
text पर click करें
evaporation from rivers and seas
text अब क्षैतिज अवस्था में है
text चुनें और context menu को देखने के लिए दायाँclick करें
size चुनें और 22 पर click करें
font का आकार बदल गया है
अब अन्य सभी arrows के लिए निम्न text type करें
evaporation from soil
evaporation from vegetation
run off water from the mountains
अब grey बादलों से वर्षा गिरना दर्शाएँ
वर्षा दर्शाने के लिए dotted arrows बनाएँ जो बादल से नीचे की ओर इंगित to
drawing toolbar से line ends with arrow चुनें
फिर बायीं ओर पर पहले grey बादल पर cursor रखें
बायेंmouse button को दबाएँ और इसे नीचे drag करें
context menu के लिए दायाँclick करें और line पर click करें
line dialog box प्रदर्शित होता है
style dropdown सूची पर click करें और
2 dots 1 dash चुनें
ok पर click करें
हमने dotted arrow बना लिया है
इस बादल के लिए दो और arrows को copy और paste करें
अब अन्य दो बादल के लिए दो arrows copy और paste करें
add dotted arrows पर text rain जोड़ें
water object के ठीक ऊपर text box में evaporation to form the clouds text type करें
drawing toolbar से text tool चुनें और दिखाए गए अनुसार text box बनाएँ
इसमें evaporation to form the clouds type करें
drawing toolbar से text tool चुनें
और grey बादलों के बगल में text box बनाएँ
इसमें condensation to form rain type करें
text box के border पर पहला क्लिक करके text box को स्थानांतरित करें
अब इसे इच्छित स्थान पर drag और drop करें
पिछले steps का अनुकरण करें टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करके टाइटल watercycle diagram दें
और text को bold में format करें
हमने जलचक्र आकृति का चित्र बना लिया है
अब callouts के बारे में सीखते हैं
callouts क्या हैं
वे विशेष text boxes होते हैं जो ड्रा पेज में
एक object या स्थान के लिए आपका ध्यान खींचते हैं
अधिकांश comic books उदाहरणस्वरूप
callouts में text रखते हैं
draw file में एक नया पेज जोड़ें
main menu से insert चुनें और slide पर click करें
एक नया पेज प्रविष्ट हो गया है
callout draw करने के लिए drawing toolbar पर जाएँ
callout icon के बगल में छोटे काले त्रिकोण पर click करें
कई callouts प्रदर्शित होते हैं
rectangular callout पर click करें
cursor को पेज पर ले जाएँ बायेंmouse button को दबाएँ और drag करें
आपने एक callout बना लिया है
आप callout में text प्रविष्ट कर सकते हैं जैसे आपने अन्य objects के लिए किया
doubleclick करें और callout के अंदर this is an example text type करें
इसी के साथ हम libreoffice draw पर इस tutorial के अंत में आ गये हैं
इस tutorial में आपने सीखा कि कैसे
drawings में text के साथ कार्य करें
drawings में text format करें
text boxes के साथ कार्य करें
text को इंडैन्ड spacing और पंक्तिबद्ध करें
lines और arrows में text जोड़ें
callouts में text रखें
खुद से इस नियतकार्य को करने की कोशिश करें
इस slide के अनुसार एक note book label और एक निमंत्रणपत्र बनाएँ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
spoken tutorial project team